यहाँ पर एक बड़ी सी मच्छी दिख रही है। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं भाईसाब जी। एक ऑटो खड़ा है जी और भी बहुत सारा ऑटो हैं और--

एक बड़ा-सा पोस्टर नज़र आ रहा है इसपर कुछ लिखा हुआ है और लोग आपस में बातचीते कर रहे हैं।

ये एक बच्चा दिख रहा है जो की बड़ी स्माइल दे रिया है इसका फोटो घिंचे है और उसके पीछे एक अच्छा सा पेड़ दिख रिया और उसके पीछे अच्छा सा पेड़ दिख रिया है भाईसाब खजूर जैसा पेड़ है।

और यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ हैं ऐसा नज़र आ रहा है एक रोड नजर आ रहा है कार नजर आ रही है।

ये एक सेक्शन नज़र आ रहा है जोकि एक मोटा आदमी है जोकि खड़ा हुआ है पीछे बहुत सारा समान टांगा हुआ है।

और ये एक बगीचा टाइप नजर आ रहा है और भी पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है व्हाइट कलर की बहुत ही अच्छी लग रही है गार्डन टाइप लग रहा है बहुत ही पेड़-पौधे हैं बोलो राधे राधे।